ऐसे करके बोहत सारी झोपड़ी बनी हुई है घास ही घास की बनी हुई है ये सीढ़ी वगेरा सब घास की लगी हुई है दरवाजा वगेरा है जिसमे गेट नहीं लगे है।

कम दिखाई दे रहा है। बोहत सारे बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ पे ग्राउंड में और कैमरा वगैरह दिखाई दे रही है दिखाई दे रहा है और घर में दिखाई दे रहे हैं और मतलब बोहत बड़ा ग्राउंड है ये और --

पे एक मतलब घर जैसा दिखाई दे रहा है। कोई सा भवन जैसा है जिसपे ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है वाईट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इसके आगे एक ग्राउंड बना हुआ है जिसमें पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान वाइट दिखाई दे रहा है इसके साइड में घर दिखाई दे रहा है और भी पेड़ ने --